और हॉल का डेकरैशन काफी अच्छा लग रहा है जो देखने मे काफी सुन्दर लग रहा है और इसमे लाइट भी काफी अच्छे जल रहे हैं।

यह एक रास्ते का फोटो है जिसके दोनों साइड बहुत सारे पेड़ --

यह एक गैलरी का फोटो है जिसके बगल में दो रूम दिखाई दे रहे हैं जिसके दो दरवाजे हैं।

और इसके नीचे नदी बहती दिखाई दे रही है और नदी के बगल में बहोत सारी झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं।